यहां लोग वॉक करने के लिये आये हैं और इसके सामने कुछ ब बिल्डिंग भी गेट टाइप का मुझे दिखाई दे रहा है जिसका नाम मुझे क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी कुछ इस पर लिखा है |

इस फोटो मे मुझे रोड के किनारे बना हुआ एक प्रतीक्षालय दिखाई दे रहा है जिसमे यात्री बस ट्रेन का वेट कर सकते है।

इस फोटो मे मुझे बहुत शानदार स्तूप टाइप का दिखाई दे रहा है जिसकी बाउन्ड्री बहुत ही शानदार तरीके से डेकोरेट की गई है।

इस फोटो मे मुझे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसके सामने एक बाइक खड़ी हुई है।

यहाँ मुझे बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

इस फ़ोटो मे मुझे बहुत शानदार नजारा दिखाई दे रहा है इसमे कुछ व्हाइट येलो पत्थर दिखाई दे रहे हैं।

और उसके सामने पेड़ भी लगे हुए हैं ऊपर से स्काई ब्लू बहोत ही शानदार दिख रहा है। यहाँ का बहोत ही शानदार नजारा है। यहाँ लोग घूमने आते हैं।

ये बहोत ही अच्छा गार्डन दिखाई दे रहा है जिसमे बोहोत ही शानदार एक मंडप टाइप का बना हुआ है।

और इसके अंदर लोग जाकर अपना पैसा निकाल सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं।

इस फोटो में मुझे एक ऑटो दिखाई दे रहा है जो बोहोत ही शानदार तरीके से बनाया गया है।

इस फोटो में मुझे एक डाक घर दिखाई दे रहा है जिसकी साइड दीवार पर ग्रामीण डाक जीवन बीमा लिखा हुआ है यहाँ कहीं बाहर से कुछ डाक द्वारा आ कर आ रख सकते है।

इस फोटो में मुझे ये क्रिकेट ग्राउंड मुझे दिखाई दे रहा है जिसपे तीन स्टंप लगे हुए हैं सामने और बॉउंड्री बनी हुई है| कुछ क्रिकेटर भी मुझे दिखाई दे रहे हैं | इस --

यहां लोग आते हैं और कुछ परसों भी अंदर खड़े हुए हैं यहां।

साइड में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और उसके साइड में बाउंड्री भी है।

और इस पर कुछ नाम भी लिखा हुआ है| यह एक साइड और भी ऑटो रखे हुए हैं।

इस फोटो में मुझे एक शॉप दिखाई दे रहा है जिसमें कांच के फ्रीजर में रखे हुए केक और स्वीट्स मुझे दिखाई दे रहें हैं और एक अंकल झुका हुआ है उसके --

साइड में दिवार पे एक एल.ई.डी. टी.वी. लगी हुई है और उसके सामने एक पर्सन लेने के लिए आए हुए हैं।